खिड़किया दिखाई दे रही है। सामने की तरफ हरा हरा फर्श दिखाई दे रहा है। पत्थर का फर्श हुआ है। दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए है। इस बिल्डिंग के खिड़किया भी दिखा--

कुछ सायकलो के टोक्रिया दिखाई दे रही है। कुछ सायकलों के पहिये दिखाई दे रहे है। फर्श दिखाई दे रहा है। सामने एक रैक रखी हुई है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है। सामने की तरफ भी सायकलें खड़ी हुई है ऊपर की तरफ रैक में छोटे छोटे बच्चो के स्कूटर दिखाई दे रहे है।

एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। और और बच्चे का पोस्टर बना हुआ है। कुछ लिखा हुआ भी है। दूसरी तरफ भी एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस में कुछ लिखा हुआ है।

और भी पीछे समान दिखाई दे रहा है। नीचे उस डम्बल्स रखे हुए है। मशीने रखी हुई और वे वर्कआउट कर रहा है।

एक आदमी बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ लड़के खड़े हुए है। मेज दिखाई दे रही है मेज पर समान रखा हुआ है।

यहँ एक चर्च का दृश्य है जहाँ पे बीच में एक पादरी खड़े है जिन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है जिनके सर पर मुकुट लगा हुआ है। ऊपर देखने पर यहाँ पर पंखे लटके हुए है मालाएं टंगी हुई है झालर लगी हुई है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग पर कुछ लिखा हुआ है। बराबर मे भी एक और बिल्डिंग का ही दीवार जा रहा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। नीचे गेट दिखाई दे रहा है। दीवार हरे रंग की है। गेट दिखाई दे रहा है जो की लाल रंग का है।

यह एक तबेले का दृश्य है यहाँ पर एक भैंस खड़ी हुई है जो की काले रंग की है उसके गले मे चैन पड़ी हुई है।